एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जोकि सफ़ेद रंग की है और इसमे टिन शेड भी लगा हुआ है और ---

पेड़ बहोत बड़े-बड़े है और नीचे ग्रास दिखाई दे रही है जो की हरे कलर की है।

बहोत बड़ी बील्डींग दिखाई दे रही है। जिसमे बहोत सी खिड़किया लगी हुई है और एक रेलिंग भी दिखाई दे रही है जो की सफेद रंग की है और खाली रोड भी दिख रहा है ।